यह महावीर स्वीट्स नमकीन की दुकान है।

यहा एक क्रिकेट का मैदान है जिस पर कुछ खिलाडी खड़े हुए है और कुछ बैठे हुए है और कुछ मैच की प्रैक्टिस कर रहे है ।

और खेत में एक टावर खड़ा हुआ है जो पहले होता था।

यह मोमो नेशन केफे है जो गया मे स्थित--

और फ्रिज में कुछ जूस की बोतलें रखी हुई है।

मार्ट के बाहर एक लाल रंग की स्कूटी खड़ी हुई है और दो काले रंग की बाइक खड़ी हुई है।

पार्क के बाहर एक बहुत ही प्यारा पौधा लगा हुआ है।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

यह एक परचून की दुकान है जिसमे कुछ आटे के ठेले और कुछ स्टील के बड़े-बड़े बॉक्स रखे हुए हैं और बहुत सारा स्टोर में समान रखा हुआ है।

ये नाज ऑटो सर्विस सेण्टर है जिसके बाहर एक लाल रंग की बाइक एक आदमी धो रहा है।

एक ऑफिस है जिसके बाहर कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

हरिद्वार मंदिर है जिसके सटर का कलर लाल और अंदर गेट के कलर लाल है जिसके बाहर कुछ चपले रखी हुई है।

है एक पार्क है जिसमें एक पटबॉल पिच बनी हुई है।

पिच के बगल मे दो पोल खड़े हुए हैं जिसपे फुटबॉल गोल करने के लगे हुए हैं।